मिठाई का एक दुकान मिठाई का एक दुकान जहाॅं के स- बहोत सारी मिठाइयाँ सजा कर के रखी हुई हैं। मिठाई का एक दुकान जहाॅं पे बहोत सारी मिठाइयाँ सजा कर के रखी हुई हैं।

सुबह का मौसम है और लोग इसमे अपने आप वॉकिंग वैगरह टहलेने के लिए आए हुए हैं।